और वो सामने गेट है गेट में एक औरत हैं।

और रेलिंग्स के पीछे इंसान है रेलिंग्स के सामने एक बाइक खड़ी है।

और दो आदमी है और एक रेड क ब ब्राउन कलर --